एक स्विमिंग पूल दिखाया गया है स्विमिंग पूल में कुछ बहुत सुंदर से पानी है आसमानी आसमानी कलर के बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं और एक लड़का है जो हाथ में कुछ लिए हुए हैं और स्विमिंग पूल का रेस टाइप का दिखाया जा रहा है जिस पर बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं।

कुछ लैपटॉप वैपटॉप दिखाए जा रहे हैं एलईडी लाइट वाइट दिखाए जा रहे हैं पीछे वॉल पर--

जिम विम करने के मशीन है डंबल्स है बहुत सारे फोटो फोटोस रखे हुए हैं उसमें बहुत सारे पिक्चर है एलईडी लाइट है फैन है गमले गमले में कुछ पौधे-वौधे लगाए गए हैं बड़े-बड़े मशीन है नीचे टाइल्स वाल्स का काम किया गया ऊपर फॉल सेलिंग का काम है एक बहुत बड़ा सा--

एक पीपल का घास दिख रहा है और भी बहुत सारे लाइट वाइट दिख रहे हैं एक पोल दिख रहा है पोल पर लाइट लगा हुआ है कुछ पौधे--

एक लड़का दिख रहा है बड़ा सा एक खेत दिख रहा है खेत में बहुत सारे पौधे-बौधे--